यह एक सैलून है यहाँ आके आप --

आप इस चित्र में यह देख सकते हैं कि --

लोग आके अपने यहाँ काम भी --

आप अपना यहाँ आकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं।

रोड के साइड में छोटे-छोटे दुकान या ठेले लगाए गए हैं।

दिए जाते हैं यहाँ आप हमेशा --

यह अभी बंद पड़ी है आपकी अगर कोई भी समस्या या --

यह बहुत ही बड़ा तालाब है।

आप यहाँ आकर आप आपको मनपसंद जो भी हेयर स्टाइल या कलर मेक-अप फेसिअल या कुछ भी करना हो आप यहाँ आकर करा सकते हैं।

यहाँ का नीट एंड क्लीन --

आप यहाँ यह देख सकते हैं कि --